ये एक बिल्डिंग है ये सफेद कलर की बिल्डिंग है।

यह एक बिल्डिंग है यह स्कूल की बिल्डिंग है यह स्कूल का क्लासरूम है यहाँ बच्चे और टीचर बैठे हैं और यहाँ दो बह--

यह एक घर है जो सफेद कलर का है।

यह एक पुल है इस पुल पे एक आदमी खड़ा है।

यह एक भवन है इस भवन का नाम कला भवन है।

इस भवन का रंग सफेद है।

इस यह जो चित्र है इसकी दीवार हरे कलर की है उस पे नॉर्थ पोल लिखा हुआ है।

इस कमरे में टी_वी भी लगा हुआ है और--

यह एक दुकान है जो टैटू की दुकान है इस दुकान के अंदर बहुत सारे चित्र लगे हैं।

और फूल भी है जो--

पेन कॉपी की दुकान है इस दुकान पे बहुत सारे पेन --

क्रीम कलर का है इस बिल्डिंग के आगे बहुत सारी बाइक खड़ी है।

यह चित्र एक दुकान का है यह दुकान पुस्तक की दुकान है।

यह एक बिल्डिंग का चित्र है इस बिल्डिंग का कलर कत्थई कलर का है।

इस मस्जिद का रंग सफेद और हरा है।

हर तरह की सब्जी रखी हुई है।

इस मस्जिद के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

ये एक स्विमिंग पूल का चित्र है।

इस नदी पे नाव भी है।